रहे है चित्र में मुझे अस्पताल दिख--

चित्र में मुझे समोसे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे लड़का सैलून पे दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे सोफा दिख रहा है।

चित्र में मुझे घना पहाड़ी एरिया दिख रहा है।

चित्र में मुझे बहुत सारे वर्कर दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे वर्कर हेलमेट लिए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक दरवाजा दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ टेबुल रखी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे लोग वाइट कपड़ो पर दिख रहे हैं।

चित्र में बैठे दो लोग दिख रहे हैं चित्र में मुझे बैलून दिख रहा है।

चित्र में मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।